ऐ दो लोहग बेठे हुवे है पास में एक आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है दोस्त के सामने बेठा हुआ है।

जिम की मशीन हैऔर काफी सारे मशीन है लाईटस दिख रही है फेन लगे हे।

एक बड़ा सा स्लाइड में झूला दिख रहा है जिसमे छोटे छोटे झूले देखी एक रहे एक फ्लोर के अंदर इधर उधर काउन्टर दिख रहे है एण्ड पोस्टर लगे हुए है होल्डिंग के बगल मे बच्चों के खेलने के झूले दिख रहे हैं। --

मैट में एकसासाईज कर रहे है ।